रहा है सब विद्यार्थी साथ मैं बैठ के काम कर रहा हैं अच्छा लगा --

देख के एकता में बल हैं सब साथ में --

चीज होता है अच्छा लगा देख के बस।

देख कितना सुंन्दर भीव --

गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसी को ठीक करवाने के --

है बहुत अच्छा माता रानी का मंदिर है इतना सुंन्दर मंदिर --

की इसमे एक दो आदमी भी हैं जा रहा हैं।

करता लेकिन हम देख के तुमको दिल खुश हो गया हैं व्यू देख --

उधर एक अपार्टमेंट हैं लेफ्ट में एक राइट --

बोहत अच्छा लगा है लेकिन मेरा अभी तक ऐ.टी.एम्. नही --

बैठ के नजारे का आनंद --

यहामा बहुत बेस्ट कंपनी हैं ये अभी यामाहा का --

ये हमारी भारत की संस्कृति यहाँ पे दर --

ये अंग्रेज तो लुट के ले गए अब जो ब --

सब बैठे हैं खेल चुके हैं क्रिकेट --

खेल के थके हुए हैं बैठे हुए हैं साइकिल लगी हुई हैं |

ये तो अपना होम टाउन है सार साइस--

यहाँ अपना एक ट्रांस्फोमर है होटल हैं।

बख्तियारपुर से पांच किलो मीटर उधर को --

सौ कुर्सी होगी यहाँ पे अब नेता जी आयेगें |

ये यहाँ पे घुमे बहुत मस्त नजा नज --

बहुत अच्छा इलाका है यहाँ पे जरुर जाएंगे एकबार।

शिव के साथ माता पार्वती उनके साथ --

टिके भी हैं बहुत अच्छा एकदम पानी में इतना --

स्विमिंग पूल बनाया है। अपने फैमली के साथ यहाँ पे मजे कर सकते हैं।